जिसमें काफी खिड़कियां भी नजर आ रही हैं।

जैसा की मैं इस फोटो में देख पा रहा हूं की इस फोटो --

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस फोटो में मुझे--

जो कि ब्रिज स्टार्ट होने की है।

घास भी लगी हुई है।

रहा हूँ कि इस फोटो का जो दृश्य है वह जे_के हॉस्पिटल का है।

जैसा कि मुझे इस फोटो का--

की यह छवि मानसरोवर स्टेशनरी की है ।

जिसके प्रोप्राइटर संजय चंद्रवंशी दिखाई दे रहे हैं।

जैसा कि मैं इस तस्वीर में देख पा रहा हूं।

जैसा कि मैं इस फोटो में दृश्य देख पा रहा हूँ।

यह लोग किसी की झांकी या कुछ विमान की सजावट में लगे हुए हैं।

की यह फोटो किसी--

आ रहा है क्योंकि यह फोटो किसी तालाब की ली गई है।

यह कार एक पुरुष व्यक्ति धुल रहा है साफ कर रहा है ।

काफी सुंदर है काफी बड़ी है।